व्हाइट कलर की दो प्लेट में--

एक साइड में मोटरसाइकिल खड़ी हुई है एक पोड़ी भी लगी हुई है दीवार के सा--

ये एक सामने टेबल के ऊपर नीले रंग का कुछ कपड़ा बिछाया है।

पीछे नीचे ब्लैक रंग की कुर्सी पड़ी हुई है।

साइड में एक पेड़ दिख रहा है और भी छोटे छोटे हैं।

और दीवार पर टैटू लिखा है।

कुछ बहोत सारी चेयर्स जैसे एक चेयर दिख रही है।

एक सामने फूलों का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और बाहर नीचे वाली साइड हरे रंग की जाली लगी है।

और सामने कुर्सी भी पड़ी हुई है।

ये एक नदी है जहां पर बहोत पानी है।